बाहर गेट के साथ एक छज्जानुमा स्टील का रास्ता भी आ रहा है साथ में काफी बड़े-छोटे पेड़ लगे हुए हैं और साइड पे एक पानी की टंकी भी नजर आ रही है।

सामने की तरफ कुछ जिम की मशीनें रखी हुई हैं इसमें कुछ वेट की है कुछ लेग्स की है कुछ बैक की हैं।

यहाँ सामने की तरफ एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है जहाँ पर काफी लड़कियां बैठी हुई है लाइन लगाते हुए।